ये एक दुकान का द्रश्य है दुकान पे चाय पत्ती नमकीन मेंगी चिकन मसाला हॉर्लिकस् ये सब रखा हुआ हैं।

यह एक विद्यालय का दृश्य हैं विद्यालय के बाहर बोर्डिंग पर जवाहर नवोदय विद्यालय लिखा हुआ हैंदोनों तरफ तिरंगा झंडा लगा हुआ है ।

और कुर्सी भी रखी हुई है ऑफिस के काउंटर पर कुछ गमले रखे हुए हैं ऊपर की तरफ फैन लगा हुआ है बगल में एक बोर्ड लगा हुआ है।

ऊपर की तरफ़ आसमान है आसमान से सूर्य से सूर्य का प्रकाश आता दिखाई दे रहा हे।

यह द्रश्य रात्री का है रात्री के इस दृश्य मे एक छोटे से ढाबे के अंदर छोटी सी लाइट दिखाई दे रही हैं।

यह दृश्य एजेंसी का है एजेंसी के ऊपर होल्डिंग में बजाज लिखा हुआ हैं।

यह दृश्य एक प्रतिमा का दृश्य लग रहा हे प्रतिमा की ऊपर और नीचे की तरफ मोमबत्तिया जल रही हे।

यह एक मंदिर के अंदर का दृश्य है मंदिर में कई मूर्तियां रखी हुई है मूर्तियों की सजावट की गई है मूर्तियों पर माला और--